है। यहां ये इमारत बहुत पुरानी बनी हुई।

दिल आ मैने पे --

यह तस्वीर किसी पा--

ये दिशा केंद्र के--

इस तस्वीर में एक पेट्रोल पंप --

बहु इमारतीय बिल्डिंग दिख रही है।